ये चित्र एक जगह का है जिसमे आस पास घर है पेड़-पौधे हैं।

ऊपर आसमान दिख रहा है पेड़ हरे भरे है आस पास कोई व्यक्ति नहीं है।

और बड़े - बड़े पत्थर पड़े हुए है रेत पड़ी हुई है मिट्टी पड़ी हुई है पेड़ है ऊपर की औरआसमान दिख रहा है।

यह चित्र एक जगह का है जो ईंटों का पुराना बना हुआ है।

ये चित्र एक जगह का है जिसमें पीछे की और एक गुलाबी रंग की बिल्डिंग है पेड़ है।

यह चित्र एक सलून का है जिसमें पीछे दो व्यक्ति खड़े हुए है चेयर पर एक बच्चा बैठा है।

चित्र एक जगह का है जिसमे एक व एक डॉक्टर बैठा है।

ये चित्र एक जगह का है जिसमे बेंचें रखी हुई है बेन्चेंस पर बच्चे बैठे हुए है बच्चे कागज का कुछ बना रहे है पीछे की और जालियां है।

जिसमे ऊपर की और एक अ-अ फूलों की डलिया लटकी है आस पास लोग खड़े है जीणों पर सबने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए है।

पेड़ है दुकानें है लोग बाइकों से साइकिल से जा रहे हैं ऊपर एक बिजली का खम्बा है।

ये चित्र एक जगह का है सड़क पर ऑटो खड़ा है। ऑटो के बाहर लोग खड़े है।